यहां बहोत सारे पुस्तक है।

इस छवि में हमको एक रूम दिख रहा है रूम में एक बड़ा सा बेड है उसी के बगल में तीन टेबल भी हैं चेयर हैं शायद।